यहाँ पर मरीज को बेड पर लेटाकर इसके पैर में --

बस स्टेशन है यह बस स्टेशन काफी बड़ा है।

यह पानी में बहोत सारे नाव लग नाव चल रही है।

यह ब्रेंचो पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

यहाँ पर सेब संतरा अनन्नास तरबूज--

यहाँ पर बाल भी काटते है एवं नाखून भी छूते है।

यह सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां आती-जाती होगी।

यहाँ पर एक आदमी प्रोजेक्ट बनाए हैं।

यह चबूतरे पर बहुत सारी सीढ़ियाँ लगे हैं।

इस इस मेले में बहुत तरह-तरह के झूले लगे हुए हैं।

बहुत से आदमी कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं ।